व्हाइट कलर का शर्ट पहना है।

एक बहुत बड़ा व्हाइट बोर्ड है और साइड में एक ब्लैक कलर का कुर्सी है।

बगल में एक पेड़ है जो बहुत हरा भरा है।

यहां बहुत सारा पंडाल बना हुआ है।

बगल में बहुत सारा लाइट भी लगा हुआ है।

एक कुड में जेब्रोनिक्स लिखा हुआ है।

ये बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ बहुत सारा पेड़- पौधा लगा हुआ है।

ऊपर में बिजली का तार गया हुआ है।

यह बहुत बड़ा रूम है यहां दो बेड जैसा लगा हुआ है।

एक गेट भी हैं जो बहुत बड़ा है।

यहां साइड में माटी का दो ढ़ेर है।

में एयरटेल का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।

यहां बहुत बड़ा पूल है और नीचे में बहुत सारा पानी है।

बहुत सारा छोटा-छोटा बैडमिंटन रखा हुआ है।

बहुत बड़ा फील्ड है यहां एक आदमी एक औरत खेल रही है।

साइड में बहुत सारा डब्बा कचरा का रखा हुआ है।

एक काला कलर का पाइप भी गया हुआ है जो एक मंदिर से दूसरा मंदिर गया हुआ है।

टेबुल भी रखा हुआ है जो सफेद कलर का है।

एक शटर भी दिख रहा है यहां।

बगल में एक कूलर दिख रहा है जो सफेद कलर का है।

बहुत बड़ा दुकान है जो किताब कॉपी का है ।

यहाँ उपर में एक लाल कलर का छोटा जैसा बॉक्स है जिसमें बहुत सारा पेन रखा हुआ है।

नीचे बहुत सारा पेंसिल रबर का छोटा छोटा बॉक्स रखा हुआ है।

लोहा का गेट लगा हुआ है।

एक सिलेंडर भी दिख रहा है यहां बगल मे एक कुर्सी है।

साइड में लाल कलर का छतरी लगा हुआ है।